जिसमें धनुष और बाण दिखाई दे रहा है।

यहाँ हमें बहुत सारे समान एक जगह पे रखे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सुन्दर तरीके से रखा गया है और व्हाइट कलर से दिवाल पैंट कि गई है।

कुछ कार्यशाला लिखा हुआ घरेलू कार्यशाला। टेबल के ऊपर वह टी वी रखी हुई है और कुछ महिलाये हैं जो बैठ कर देख रही --

यहाँ हमे एक मंदिर सा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसे घेरा गया है।

और दूर में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। आसमान दिखाई दे रहा है नीला-नीला। बिल्डिंग का जो कलर है वो व्हाइट दिख रहा है उसमें खिड़कियाँ भी नज़र आ रही हैं।

यहाँ लिखा है कुर्मा महासभा शाखा बदायूँ।

यहाँ सामने बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है और सामने दुकान है एमके स्पोर्ट्स सेंटर और उसके बगल मे ए सेवन कोई दुकान का नाम है।